यहां कठे कलर से बना हुआ है। यहाँ पर नीचे सीढ़िया बनी हुई कुछ पत्थर बने हुए हैं।

और यहां पर खेत बने हुए हैं और यहां पर पेड़-पौधे भी बने हुए हैं चारों तरफ।

यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है। जहाँ पर कुछ झूले रखे हुए है। यह --

ग्लोरी गार्डन मैरिज हॉल बना हुआ है और यहाँ पर एक --

और बलून रखे हुए हैं। यहाँ पर एक कूलर रखा हुआ है।

और यहाँ पर फूलों से सजावट हो रखी यहाँ पर एक पास में पंखा भी ल --

एक बॉल डली हुई है यहाँ पर सुखी घास डली हुई है और बाहर --

यहां पर टैबले डाली हुई है। जहां पर लकड़ी के चेयर डली हुई है। लकड़ी की टेबल डाली हुई है।

ब्लैक और कत्थे कलर्स है यहां पर घर के बाहर --

यहाँ पर एक वाइट कलर का खम्बा लगा हुआ है। यहाँ पर ब्लैक कलर से चेयर डली हुई है।

यहां पर एक स्टेज बनी हुई है। जहां पर सफेद कलर से और बैगनी कलर से पर्दे लगे हुए है। यहाँ पर --

विद्यालय का नाम लिखा हुआ है यहां पर क्रीम कलर से और कत्थे कलर से।

मेला लगा हुआ है जहां पर बहुत सारी भीड़ है और अंदर जाने के लिए एक सक्रियतली हुई है।

पतली सी गली गयी है जो कि अंदर जाने के लिए रास्ता है और यहाँ पर और यहां --

फूलों से सजा हुआ है और यहाँ पर गुलाब के फूल लगे हुए हैं।

कत्थई कलर से गेट लगा हुआ है यहाँ पर। सफेद कलर से बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री के बाहर पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

पर्दा लगा हुआ है और यहां पर एक एलइडी भी लगी हुई है।